इस फोटो में एक अपार्टमेंट जैसा दिख रहा है और इसमे जमीन पर टेल्स लगी हुई है और वाइट कलर से पेंट किया गया है।

इसमें ए_सी भी लगी हुई है और काउंटर भी रखे हैं।

चेयर भी रखी हुई हैं और टेबल पर एक गुलदस्ता रखा हुआ है जिसमें पेड़ लगा है।

ये एक रोड है इस पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

बहुत सारे गुलाब के फूल दिख रहे हैं।

पर इसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदे पड़ी हुई हैं जिससे वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

इसमें कुछ लोग चेयर पर बैठे हुए हैं जो अलग अलग ग्रुप के साथ है कुछ लोग खड़े हैं।

और ये पूरी व्हाइट और क्रि क्रीम कलर से पेंट की गई है।

और आसमान में एक सूरज दिखाई दे रहा है जो डूबने वाला है जो ऑरेंज और येलो कलर का दिख रहा है।

इस फोटो में एक समृद्धि उपवन जैसा बना हुआ है जो लखनऊ में है।

और इसके साइड साइड पर बहोत सारी बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग घर बने हुए हैं।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

उसमें एक आदमी भी बैठा हुआ है।

ये एक बॉयज हॉस्टल दिख रहा है।

इसमें एक मू अंदर मूर्ति भी बनी हुई है।

रोड के जस्ट सामने कुछ घर जैसा दिख रहा है।

नकली शेर की मूर्ति बनाई गई है उसके जस्ट सामने कुछ औरते पूजा कर रही हैं।

और इस पार्क में एक एरोप्लेन भी बना रखा हुआ है।

मॉल या बिल्डिंग बन रही है जो अभी पूरे तरीके से नहीं बनी है और--

इनको लकड़ियों से बांस से बंधा गया हैं इसे रोकने के लिए औ--

लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं कोई दो लोग ग्रुप में बैठे हैं कोई पांच बैठे हैं सब अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं।

लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस होते हैं।

ये फोटो हुसैनाबाद नींबू पार्क का है ये पार्क के अंदर बनी हुई है।

ये जो किला बना हुआ है ये बहोत पुराने टाइम का है और बो --

इस फोटो में ढाबा बना हुआ है। एक जस्ट सामने ढाबा बना हुआ है। एक राइट साइड पे शेर-ए-पंजाब ढाबा बना हुआ है।

ये पुरुष हैं जो बैठे हुए हैं सबके सिर पर पगड़ी है।

और इनके हाथों में भी कुछ सामान है जो शायद गाना बजाने के लिए काम आते हैं।

रोड के राइट साइड पर बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसी के आगे एक आदमी खड़ा है जिसने हाथ में कुछ लिए हुए है।

जिम के अंदर बहुत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

जमीन पर कारपेट जैसा बिछा हुआ है।

एक आने का रास्ता है दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है।